ये बेडरूम है यहाँ पे अ बेड लगी हुई है और ब्लैंकेट भी है और इसपे चादर बिछाया हुआ है दो पिल्लो है ।

और हरे-भरे हैं और बड़ा बादल है जो काफी आकर्षक है आसमानी --

ये प्लेग्राउंड है काफी बड़ा फील्ड है ये यहाँ पे सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दौड़ रहे हैं ।

ये होटल है जिसका नाम अतिथि है और इसकी ये काफी अच्छा है।

यहाँ पे धार्मिक और पाठ पुस्तक थोक में दी जाती है और खुदरा विक्रेता भी है यहाँ पे हर एक तरह की बुक मिलती है।

ये किराने की दूकान है यहाँ पर हर एक तरह की चीज़े मिलती है और जूस पानी हर एक चीजे है और इसमें बहुत सारी चीज़े दिखाई दे रही है स्प्राइट --

ये यहाँ पे इंस्टिट्यूट है जिसका नाम फंडामेंटल ऑफ़ कॉमर्स यहाँ पे कॉमर्स आई.कॉम. बी.कॉम. इंग्लिश --

जिसका नाम है के.जी.एम. मोटर बाइक रिपेयरिंग सेंटर और ये दुकान काफी बड़ी है।

ये बिल्डिंग है बन चुकी हैं काफी बड़ा है और आकर्षक भी है। इसका नाम इन्फिनेटी है और --

अटेंशन में खड़ें हैं और सभी सफ़ेद कलर का शर्ट और पैंट पहने हुए हैं।

यहाँ पे कम्पटीशन चल रही है सभी बच्चे लोग अ --

ये बिल्डिंग है जो इनके बाहर का जो है आउटडोर बहुत अच्छा है और इनके गेट भी काफी अच्छे है बा बाहर एक --

काफी अच्छा दृश्य है यहाँ पे चिड़िया उड़ती है और अभी धुप है ।